यहां पर आदमी मास्क लगाया हुआ है।

यहां पर बहुत सारे टाइल्स लगाए हुए हैं और ए_सी भी लगाया हुआ है।

यहां पर सामने एक नारियल का पेड़ का दृश्य है।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

यहां पर टाइल्स लगाया हुआ है यहां पर बहुत सारे लोग हैं जोकि अपने हाथ में फोन लिए हुए हैं।

यहां पर बहुत प्रकार की मछलीया रखी हुयी है यहां पर एक औरत बैठी हुयी है।

यहां पर एक बस खड़ा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं।

आसमान में बादल दिख रहे हैं और बहुत सारे ईंटों से जोड़ाई किया गया है।

यहां पर बहोत बड़ा पोस्टर छपा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है।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

पेड़ पौधे दिख रहे हैं और आसमान में बादल दिख रहे हैं यहां पर बहुत सारे प्लास्टिक लटकाए हुए हैं।

और कांच चमकता हुआ नजर आ रहा है यहीं पे बोर्ड दिख रहा है बोर्ड में तर खींचा हुआ है।